और इ सब्जियाँ रखी हुई है | एक खिड़की दिखाई दे रही है | एक आदमी दिखाई दे रहा है |

छत है छत के ऊपर पिल्लर का रोड खड़ा हुआ है |

इधर एक बाग़ है बाग़ में भी पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं छोटे-छोटे भी ही दिखाई दे रहे हैं।